घोड़े के पास ब्लैक टी-शर्ट में एक आदमी खड़ा है चारों तरफ हरियाली है।

बहोत ही किचड़ है नीचे मिट्टी और किचड़ चारों तरफ हरे रंग का पट्टा है पेड़ पौधे--

कोई समारोह लग रहा है सभी बच्चे तैयार हैं।

खेल कूद गाना गाएंगे और नृत्य होगा।

चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली है।

बहोत ही शांति है बहोत ही साफ सफाई से रखा गया है।

कुर्सी पर एक आदमी बैठा है।

बहोत ही सुंदर है यहां कोई नहीं है बहोत सफाई है बहोत ही सुंदरता से सजाया गया है।